सा रूम है जिसमें बहुत सारे रेड कलर के पर्दे लगे है जो डेस्क सामने टेबल और चेयार है जो व्हाइट कलर की है जिसमें बहुत सारे लड़के लोग बैठे है।

एक बड़ी सी हिरन है जिसने मुँह नीचे झुकाई हुई है उसके बदन पे वाइट कलर के टोपे-टोपे से दिख रहे है। बोहोत बड़ा अंगना है जो काले रंग का है सामने में जाल लगी हुई है जो काले रंग की है।

कबार्ड कांच की है और शटर का कलर येल्लो है अन्दर में एक सिस्टम रखा हुआ है और लाइटिंग गोल गोल --

बहुत सारी गज है जो ब्लैक है और ग्रीन है | आसमान का कलर काला बैगनी वाइट है | निचे कुछ पत्थर भी पड़े हुए है और साइड में और भी सारे गज है जो ग्रीन है |

और दो चम्मच है जो स्टील के हैं और एक प्याली में चटनी है ग्रीन कलर की जिन जिसमें चम्मच है स्टील का। साइड में एक प्लेट भी ल --

बड़ी सी लम्बी सी ट्रैन है जोकि लोहे की बनी हुई है साइड में बड़े-बड़े लोहे की खुटी लगी हुई हैं जिसमें लम्बी-लम्बी तारें लगी हुई हैं और --

बड़ा सा पथर में मूरत बना हुआ है पथर भी ब्लाक है अंदर मूर्ति भी ब्लाक है जिसमें आसून जमा कर हाथ जोड़ कर बैठा हुआ है सर पे मुकुट है एक बड़ा सा पक्के का पाचरी सा बना हुआ है जिसमें टाइल्स लगा है।